अ देखा पटरी भी लौकता साइकिल मोटर सायकिल कुल लौकता जाड़ा के दिन लागता धुंध बा पूरा हरा-भरा पेड़-पौधों बा।